और चारो तरफ पानी है बोट बनाए हुई है पुल बने हुए है आस-पास हरियाली है ।

दुकानों में बर्तन और लड़कियों के सामान रखे हुए है।

सड़क के किनारे एक बड़ी सी माला रखी हुई है। जोकि फूलो की है और साथ में ही लोहे की सीढ़ी है जिसमें --

नीचे पुर्जे रखे हुए है एक बड़ा-सा कागज़ का गत्ता है जोकि भूरे रंग का है काले रंग के टायर्स है ।

अन्दर जाने के लिए दरवाज़ा बनाया हुआ है राष्ट्रीय सम्बन्धी बीमार बीमा योजना लिखा हुआ है आस पास --

कच्ची मिट्टी है आस पास हरियाली है आसमान नीले और सफ़ेद बादलो स--

दरवाज़ा बनाया हुआ है जिसमें ऊपर एक मूर्ति बनाई हुई है कमल के ऊपर दर्शायी हुई है अन्दर भोत सारे महिलाये और पुरुष जा रही है।

शुगर कैंडी ही पकडे हुए एक आदमी वहाँ पर खड़ा है आस पास लोगो की भीड़ है और रात का समय है।

एक रूम में दूकान में एक आदमी खड़ा है लाल रंग के कैरेट कांच की बोतले फ्रिज में बहोत सारी --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

चारो तरफ मैदान है घर बने हुए है पहाड़ है पत्तियों का रंग हरा है कुछ भूमि --

अच्छी है आसपास हरियाली है पत्तियों का रंग हरा है घर पर घर है जो उनमें सफ़ेद रंग किया हुआ है ।